और एक गाड़ी व उधर आखरी मे खड़ी हुई है।

एक इंसान खड़ा हुआ है जहां पर हथौड़ी रखी हुई है।

और पीछे की साइड कुछ पार्क है एरिया ये पार्किंग में ही लगी हुई है कुछ आउटसाइड भी गाड़ियाँ हैं।

चार लोगों का सकल नहीं दिखाई दे रहा है दो लोगों का सकल बिलकुल क्लीयरली दिखाई दे रहा है।

और सूरज डूब रहा है लगता है शाम हो रही है।

यहां पर गार्डन एरिया है या बहुत बड़ा शायद मैदान नजर आता है।

ई सारा भोजन मिला जाता है यहां पर--

यहां पर आंध्रा बैंक का ए_टी_एम है कुछ गाड़ियां खड़ी है एक आदमी जाता हुआ नजर आ रहा है शॉप की तरफ--

यह महाविद्यालय का फोटो है कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं।

यहां पर एक स्कूटी एक बाइक का सवार इंसान है दो--

और यहां पर थोड़ा काफी भीड़ एरिया भी मालूम होता है।

ये मट्टी अभी यही है एक रेड कलर का लड़का खड़ा हुआ है दो आदमी--

बाहर से स्कूल की फोटो ली गई होगी।

यहां पर सफेद कलर के मोर दिखाई देते हैं जो कि एक न दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और एक दोर दूरी पर है।

और एक बहुत दूर पर नाचता हुआ नजर आ रहा है।

जहां पर गुड्डू भाई के कपड़े वाले--

माहौल नजर आता है हाईवे का सड़क नजर आता है साथ ही यहां पर दो ट्रक सामने की ओर आ रहे हैं।

एक चैनल गेट सा भी नजर आता है।

टेबल फर्नीचर से लगे हुए हैं।

साथ ही यहाँ पर चेयर्स रखी हुई है बहोत सारी कुर्सियाँ रखी हुई है एक डस्टबिन है दो आदमी खड़े हैं।

होटल का फोटो नजर आता है जहां पर अभी कोई कस्टमर नहीं है।

दो कंबल नजर आते हैं साइड में कुछ फर्नीचर्स लगा हुआ है।

यह एक पहाड़ी इलाका दिखाई देता है।

चाय बिस्किट रखे हुए है कप रखे हुए है एक स्टील का डब्बा रखा हुआ है कुछ--

यह एक बहुत बड़ी नदी मालूम होती है।

ये एक कपड़े का शोरूम या कपड़े का शॉप नजर आता है।

यहां देखा जाए तो दो आदमी कार को वाश कर रहे हैं एक बाल्टी में--

एक कपड़ा उठा करके बाल्टी में पानी रखा हुआ है और एक ब्लैक कलर का है कार को अच्छी तरह से वाश किया जा रहा है जिसमें की--